बराबर में बिल्डिंग है एक सामने बूथ बना हुआ है ऑरेंज कलर हो रखा है उसपे बराबर में फुलबाड़ी है गमले हैं।

एक बुग्गी टाइप की है जिसमें पैए लगे हुए हैं उसके ऊपर एक मछली है बहुत बड़ी जिसके दो पंख हैं बहुत बड़े-बड़े एक--

फूल है फुलवारी है फूलों का कलर सफेद भी हैं।

व्यक्ति हैं औरतें हैं जिन्होंने साड़ी बांध रखी है कुछ खाना खा रही हैं।

में बोर्ड लगा हुआ है पेड़ है एक लोहे का पोल है।

खुलवाड़ी है सड़क है जो सीमेंट से बनी हुई है।

वो जो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं।